इस तस्वीर में हमें काफी सारी कार देखने को मिल रही है।

एक्सीडेंट कार खड़ी हुई है एक ट्रक खड़ा हुआ है।

ये सैनडल सारे लड़कियों के हैं सबसे ऊपर जुतियां रखी है।

सामने एक अलमीरा है जिसमें बहुत सारे वॉलपेपर लगे हुए हैं।

ये एक डेंटिस्ट का क्लीनिक है।

वॉच लगा है जिसके अंदर एक फ्रिज रखा हुआ है।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां नीचे टी शर्ट रखी हुई--

साइड में जूते रखे हुए हैं।

और ग्राहक खड़े हुए हैं इसमें काफी सारी वैरायटी की मछली रखी हुई--

ये एक हॉल है जिसमें दो बेंच लगे हुई--

दो चेयर लगी हुई हैं एक फ्रिज रखा है फ्रिज के ऊपर दो हेलमेट रखे हैं।

ये एक फैक्ट्री है जिसमें दो मजदूर काम कर रहे हैं।

ये एक दुकान टाइप है जिसमे मां सरस्वती की तस्वीर लगी हुई है।

बाकी भी बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है।

ये एक दुकान है दुकान में बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

साइड साइड में लोहे का जाल भी लगा है।

दीवारों पे लाल रंग हो रखा है।

यह एक ग्राउंड है जिसमें काफी सारे स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे कुछ स्कूल बस और वैन खड़ी हुई हैं।

सिर पे टोपी लगाई हुई है जिसपे बॉय लिखा हुआ है।

ये दो मंजिला मकान है।

साइड में एक कमरे की तरह का कुछ पीले कलर का है।

साइड में रैक लगे रहो है जिन रैको में भी पेंट रखा हुआ है।

इसमें बहोत सारी बड़े बच्चो की साइकिल रखी हुई हैं।

कुछ शा छोटे बच्चों की साइकल रखी हुई हैं वॉकर रखें हुए हैं।

और जीमे बहोत अच्छे से सजावट की गई है।

जहां पे कार को धोया जा रहा हैं साइड में एक मोटरसाईकल भी खड़ी हुई हैं।

कंटेनर में बहुत सारे पार्सल पड़े हुए हैं।